ब ब्लाउज क नोट लागल बा कुर्सी बा पजामा कुर्ता पहिनले बान कुर्सी --

ई मस्जिद हिया मस्जिद हिया में चौकी रखल बा एंड कपड़ा बिछावल बा मस्जिद जांगला बा एगो दुगो --

खुलल बा हवा जाता एदम केहू बा ना ही सुनान बा नीचवा फर्श बनल बा।

एमे संगीत गाना सिखाबला सारे गामा सिखावल जाला एमए कुर्सी बा टेबल बा लिखल बा आर ओ सी के --

आद लौकता नीला आधा लौकता सफ़ेद बादल लौकता। काला काला पौधा बानसन। सफेद हरा लाल पेड़ ऊपर लौकतन सन। बहु --